यह एक अ स्कूल है इसके चारों बगल --

दूर टावर दिखाई दे रहा और इस --

बस स्टैंड के बगल में मकाने बहुत सारे दिखाई दे रहे है।

हा बोहोत सारे मिट्टी के बल --